ऑटो है और भी गाड़ियां हैं कार है.

और हमें आदमी भी दिखाई दे रहें--

अ एक गाड़ी खड़ी हुई है बीच में मैदान में.

एक डोर-मेट रखा हुआ है शटर के पास जमीन पर सफेद टाइल्स लगे हुए हमें नजर आ रहे हैं.

अ पेड़ लगे हुए जिनकी कटिंग की गई है वह लगे दिखाई दे रहे हैं वहां पर हमें एक बैठा हुआ आदमी दिखाई दे रहा है.

शाम का हमे समय दिखाई दे रहा है सूरज डूबता हुआ नजर आ रहे--

एक घर बना हुआ दिखाई दे रहा है हमें और सड़क हमें सुनी नजर आ रही है सुनसान रास्ता--

हमें दिखाई दे रहा है ओथ लिखा हुआ है पत्थर के ऊपर बना हुआ है डिजाइन पत्थर का उसके ऊपर--

अ हमें अ कुर्सी बैठे दो लोग दिखाई दे रहे जिनके चेहरे छुपे हुए हैं।

और भी हमें तस्वीर में दिखाई दे रहा है एक खड़ा हुआ है कोई लेकिन हाथी नजर आ रहे हैं बस --

महिलाएं और बच्चे दिखाई दे रहे हैं टेंट लगा हुआ है.

सफेद सफेद आसमान और उसमें कहीं कहीं काले काले हमें बादल दिखाई दे रहे--

इस तस्वीर के अंदर हमें बहुत सारी अ पॉलीथिन के जो--

और हमें एक बना हुआ पुल जैसा दिखाई दे रहा है उस पर लोग खड़े हुए हैं.

घर हमें इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है और घर के बाहर पेड़ लगे हुए हैं.

और हमें पन खुले भी दिखाई दे रहे हैं ये रखे हुए.

हमें दिखाई दे रहा है लाल कारपेट बिछा हुआ है नीचे और हरे-हरे पेड़ लगे हुए हैं.